जिस पर की कुछ लोग भी--

मुझे एक सड़क भी दिखाई दे रही है जिस पे कुछ गाड़ियां भी आ जा रही हैं।

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे उसके साथ एक व्यक्ती खड़ा दिख रहा है।

मुझे एक हरियाणा स्टोर --

स्टेज पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।

सामने ही मुझे यहां काउंटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक गोल्ड की दुकान दिखाई--

समान पड़ा हुआ है उसी के साथ सामने कुछ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।